और यह काफी तेज भी भागती है। इसका शिकार जो कि एक टाइगर ही कर सकता है और ये --

बोहोत ज्यादा घास फूस है और ये किसी बड़े फार्म या साड़ी फैक्ट्री का पीछे की तस्वीर है बैकग्राउंड है और इसमें देखे रहे हैं कि एक यहाँ पर बोहोत ज्यादा भीड़ वो घास है काफी हरी --

हम तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि कुछ कफ रखे हैं कुछ बड़ी-बड़ी --

पायल घुंघरू बिकते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा पायल घुंघरू या फिर राखियां हैं जो कि टंग रही है बिक रही है और ये जो इनकी सेल हो रही है।

जो कि अपनी मतलब कुछ हिरण है जो कि अपने खाना खा रहे हैं और ये हिरण जो एक जानवर जो कि काफी खतरनाक और चालनाक जानवर है मतलब काफी चतुर जानवर है जो कि शेर से भी अपना मुकाबला करते है।

या फिर ये बिल्कुल सुबह सुबह का समय है जी लाइट भजने का टाइम है और जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर --

योगा क्लासेस है और यहाँ पर की योगा क्लासेस चल रही हैं जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि एक बड़ा सा अपना वो चल रहा है जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पर काफी ज्यादा वो --

ये जो हम तसवीर देख रहे हैं इस तसवीर में हम देख रहे हैं कि यहां पर कुछ एक फैमिली है जिसमें कि एक आदमी है जो कि इसके एक टोकरा रखा है।